अ गैस चुल्हो की शॉप दिखाई दे रही है।

एक बड़ा सा ऑफिस एरिया यहां दिख रहा है इस ऑफिस एरिया में अलग अलग सेक्शंस बने हैं।

कार्टूंस में कुछ यहां पर अ मटेरियल अंदर की तरफ पैक है।

और रिसेप्शन एरिया यहां पर है एक काउंटर दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ सामान रखा हुआ है।

आ जिला पंचायत धार लिखा हुआ है।

ऊपर की तरफ यहां पर एक एंटीना दिखाई दे रहा है।

नदी यहां पर दिख रहा है नदी के किनारो पर--

एक ऑफिस यहां पर है जिसमें अंदर की तरफ--

एक रेस्टोरेंट के बाहर यहां पर बहोत सारे--

फोर व्हीलर्स खड़ी हुई है जहां पर की अं बहोत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हैं गार्डन बना है और यहां पर कुछ--

सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगाए गए हैं यहां पर ब्लॉक्स भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं दो पिलर्स यहां पर लगे हुए हैं।

तीन चेयर्स पर एक लड़की बैठे--

इस लड़की ने जींस और टॉप पहना हुआ है।

जिस पर लिखा है प्राणी संरक्षण सप्ताह--

अंदर की तरफ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिटी का एक ऑफिस भी होगा इसीलिए यहाँ पर इतनी इलेक्ट्रिक सिटी के जाल दिखाई दे रहे हैं खम्बों के --

बहोत ही सुंदर-सुंदर प्लांट लगे हुए दिख रहे है और यहाँ बहोत सारे हैं। यहाँ पर एक खिड़की भी नजर आ रही--

नदी दिखाई दे रही है इस नदी के आसपास--

और सामने की तरफ भी हरे भरे खेत दिख रहे हैं।

थोड़ा ही पास में एक खाली प्लॉट दिखाई दे रहा।

कि सामने वाली लाइन पर रोड के उस साइड लाइन दुकाने दिख रही--

यहां पर हमें एक शादी के मैरिज गार्डन का--

इल्युमिलियम का मटेरियल बना हुआ दिख रहा है यह एल्युमिनियम की धातु ही--

और इस नदी के पास में एक पहाड़ से--

झरना बहता हुआ दिखाई दे रहा है।